व्हाइट और ब्लू कलर का है दो बाइक खड़ी है एक ब्लैक कलर की बाइक है।

ऊपर ब्लू कलर का होल्डिंग लगा हुआ नीचे एक व्हाइट कलर के एक्टिवा खड़ी है दो ब्लैक कलर की बाइक भी खड़ी है।

साइड में एक ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है।

पीछे ब्लैक कलर के परदे लगे हुए हैं नीचे चॉकलेटी कलर का कारपेट बिछा हुआ हैं।

एक काउंटर बना हुआ दिख रहा है बहुत सारी लाइटे लगी हुई है बाहर एक रेड कलर का डस्टबिन रखा है।

फोल्डिंग लगा है जो की रेड कलर का है उस पे ऑरेंज कलर की फूलों से डेकोरेट किया --

ट्रेन दिख रही है साइड में बहोत सारे बड़े ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे हैं कुछ छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं ग्रे --

व्हाइट कलर के शूज भी पहने हैं व्हाइट कलर का पिलर दिख रहा है उसपे एक स्विच बोर्ड भी दिख रहा है |

ये एक होटल का किचन है दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे गैस रखे हुए हैं।

एक वाइट और ब्लू कलर की है | एक पूरी येल्लो कलर की है और एक ब्लू और रेड कलर की है | कुछ लोहे की पाइप बने हैं।

एक लेडिस भी दिख रही है ऊपर एक सीढ़ी दिख रही है वहाँ पे एक नीले कलर का गेट दिखत बा स खिड़की दिखत बा।